बिस्किट्स रखे हुए है अलग-अलग वैरायटी के कुछ वेफर्स रखे हुए है मसाले है नीचे एक कैरेट रखी हुई है।

ये एक चाय का स्टॉल है यहाँ पर बहुत सारे कुल्हर रखे हुए है चाय का समान रखा हुआ है नीचे एक बाल्टी रखी हुई है जिसमे बहुत सारा कचरा है।

स्टाल के ऊपर एक बैनर लगा हुआ है जिस पे चाय का नाम लिखा हुआ है साइड में एक बच्चा खड़ा हुआ है बच्चे ने एक जैकेट पेहनी हुई है।

एक स्टूल रखा हुआ है स्टूल ब्लैक और ऑरेंज कलर का है साइड मे एक अंकल खड़े है जिन्होंने वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पेहना है।

मॉलस में बोहत सारे फ्लोर्स है ऊपर की साइड्स बोहत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं।

ये एक कपड़ों की फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़े बनाये जाते है बड़ी-बड़ी मशीन लगी हुई है।

एक ने विकट्री बताया हुआ है ब्लैक कलर की टी -शर्ट पहनी हैं।

बगल में स्प्रे बॉटल है पीछे बहुत सारे कबर्डस बने हैं।